यहाॅं पर एक आदमी बैठ के अपने फोन में कुछ देख रहा है।

फूलों की बगिया में खड़ा है देखने में बहुत ही सुंदर चोटलिया लगा रहा --

यहाँ पर एक ग्राउंड में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जोकि सामने की ओर लगी हुई स्क्रीन में कुछ देख रहे हैं।